और इस व्यक्ति बगल में कई सारी औरतें और एक लड़का दो लड़के भी हैं और ये लोग अपनी मुस्कुरा भी रहे --

ये एक लॉज का चित्र दिखाई ये एक घर का चित्र दिखाई दे रहा --

इस घर में कई सारी झालरें वगैरह टंगी हुई है और इस घर के अगल-बगल एक गार्डन है और उस गार्डन में कई सारे हरे-भरे पेड़-पौधे भी लगे हुए हैं और --

सीढ़ी पे खड़ी हुई हैं और ये औरतें बड़ी खुश भी लग रही हैं और ये औरतें आपस में कुछ बातचीत